सामने की ओर एक रोड है जिस पर एक कार जा रही है बिल्डिंग के ऊपर से वायर के तार गुजर रहे है ।

यह एक ग्राउंड है जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए है तथा साइड मे एक बाई साइकल पार्क है।

यह एक पार्क है जिसके किनारे पर एक टेबल रखी हुई है तथा एक डस्ट्बिन रखा हुआ है डस्ट्बिन का कलर ग्रीन है।

यह एक बुक स्टॉल हैं जिसका नाम तेजा बुक स्टॉल हैं। इसके बाहर काउन्टर पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ हैं।